बोर्ड पे ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया गया है।

जिसमें पर्पल लाइट का उपयोग ज्यादा किया गया है।

कुछ बच्चे और पैरेंट्स भी खड़े हैं।

इसके सामने पार्किंग स्थल बना हुआ है।

तस्वीर में एक शॉप दिखाई दे रहा है।

पेप्सी और कोको कोला का कैरेट भी रखा हुआ है।

दी गई तस्वीर पटना के किसी शॉपिंग कंपलेक्स का है।

तस्वीर में चार पांच हिरन दिखाई दे रहे हैं।

जिनके सामने कुछ अनाज एक बक्से में रखा हुआ है ।

तस्वीर में एक व्यक्ति मिरर के सामने बैठा दिख रहा है।

एक व्यक्ति रिसेप्शन पे कुछ पूछ रहा है।